कॉर्नफ्लेक्स बहुत सारे बिस्किट मूरी सब चीज है।

इस चित्र में कारखाने का दृश्य दिख रहा है।

में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम का दृश्य दिख रहा है।

यहां पे बहुत सारे वाशिंग मशीन सजाकर रख--

रास्ते पर एक आदमी जा रहा है बाहर बहोत सारे स्कूटी और दो तीन बाइक रखा हुआ है।

बिल्डिंग के गेट से दो आदमी जा रहा है अंदर में एक औरत रुका हुआ है।

चित्र में रास्ते की दृश्य दिख रहा है यहाँ पे रास्ते से गाय जा रहा है।

सामने एक गाड़ी रुका हुआ है सफेद रास्ते पर बहुत सारे बाइक है।

व्हाइट कलर का वॉल है ब्लॉक ईटा का रास्ता है।

यहां पे जो मंदिर है वो एक ठेला गाड़ी के उपर सजाया हुआ है।

सामने एक साइकिल है और उसके पास एक नीला ऑटो रुका हुआ है।

मंडप के बीच में एक पेड़ है और सामने--

यहां पर घर का सामान मिलता है दुकान का नाम ब्लू ग्लास कॉर्नर है।

शाम का समय है चारों तरफ हरे बड़े बड़े पेर उगा हुआ--

नीचे कपड़े रखा हुआ है ढेर सारे पैंट है और बहुत सारे शर्ट है उसका साइड में बेल्ट रखा हुआ है।

यहां पर बहोत सारे चाय पत्ते का पेड़ उगा हुआ है।

बहुत सारे औरत आकर यहां पे पत्ते तुलने का काम कर रहा--

दुकान के सामने बाल्टी पॉल आदि बेचने के लिए रख के रखा है।

ई चित्र में घर का छत का दृश्य दिख रहा है।

यहां पर छत का ढलाई का काम चल रहा है चारों तरफ रत से बंधे हुए हैं।

इस चित्र में एक छोटा रेस्टोरेंट का दृश्य दिख रहा है।

दुकान के अंदर में महिलाओं का चीज जैसे शैंपू साबुन क्रीम परफ्यूम नेकलेस आदि रख के सजाया हुआ है।